और साइकिल भी एक खड़ी है।

यहां पर एक बेड पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है।

और यहाँ पर सोफा रखा है लाल रंग के सोफे रखें हुए हैं लाइन्स --

अ अन्य ब्रेंच है अ दो सफेद रंग की भी है और नीचे की तरफ संगमरमर --